सब्जीमंडी है ज़मीन पर कचरा पड़ा है सुखी लकड़ी पड़ी है।

हरी घास है बड़े-घने पेड़ हैं बैठने की बेंच लगी है।

बिल्डिंग है आगे मेन गेट खुला हुआ है ऊपर हरा बोर्ड लगा हुआ है।

बहोत बड़ा पहाड़ है पूरे पहाड़ में नुकीले पत्थर लगे हैं झरना बह रहा है।

लालकाला कपड़ा है बहोत सारे सिपाही खड़े हैं सलाम कर रहे हैं।

लोग है एक लड़का थैली लेकर जा रहा है।

एक ओटा -सा बम्बू के ऊपर छत बनी हैएक आदमी खड़ा हैपेड़ है।

झरना बह रहा है नीचे पानी जमा है बहता हुआ पानी फेस जैसा दिख रहा है।

बिजली के खंबे लगे हैं।